दोनों साइड से सीढ़ियाँ हैं नीचे कुछ छोटासा दरवाजा जाली का दिख रहा हैं।

खिड़कियां लगी है दो खिड़कियां खुली दिख रही है।

और ऊपर बादल काले दिख रहे है।

दो मंजिल की फो अन्नन कॉलेज दिखाई दे रही है स्कूल --

और इस लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

नीचे कुछ थूका हुआ जैसा दिख रहा है।

अंदर सफेद लाइट के कुछ पर्दे दिखाई दे रहे है।

और ट्रेन के उस पार कुछ सामान है बड़ी-बड़ी फर्शीया रखी दिखाई दे रही है।

सीरीज लगी हुई दिखाई दे रही है ऊपर बल्ब है।

क्या बोलते हैं कंप्यूटर पे दो लड़के काम कर रहे हैं।

यह एक अह कोई सी दुकान दिख रही है कंपनी जहां प्लास्टिक का वर्क होता है।

और पीछे कुछ अह घर जैसे दिख रहे हैं पेड़ लगा है बहुत बड़ा।

यह एक ढाबा दिख रहा है।

और स्प्राइट का स्टेचू पेस्ट बना हुआ है और दिख रहा है एक पेन दिख रहे हैं।

जिसमें धकाने से कोई सटर टाइप का लग रहा है पट्टे जैसे--

पेड़ दिख रहा है क्या बोलते पाल बनी हुई दिखाई दे रही है। उसे पानी को रोकने के लिए बनाते अपने जैसा उसे टाइप --

यह एक स्कूल है जिसके बाहर एक औरत दिख रही है अंदर से आते हुए इसका--

चद्दर दिख रही है रखी हुई पर्दे लगे हैं आग जलाने वाली--

सामान दिख रहा है। पीछे मशीन जैसा कुछ नीला--

आ वो दिख रही है लगाने के लिए साइन लगाते उसे टाइप से--

इस वाणी ऐसा कोई आश्रम जैसा दिख रहा है।

टंगा हुआ दिखाई रहा एक आदमी फोटो ले रहा है।

और लोग खडे हुए है एक आदमी के हाथ मे कुछ पेपर वगैरा बैग टंगा हुआ है आई_डी --

यह एक अ शॉप जैसी दिखाई दे रही--

कुछ रखा हुआ है मोबाइल इलेक्ट्रिकल कुछ शॉप दिख रही है ऐसे कुछ प्रोडक्ट की।

मसिन दिखाई दे रही है क्लैप जैसा है कुछ ये ऐसा लग रहा--

कांच में रखी दिखाई दे रही है गाड़ी दिखाई दे रही है पास एक नली नाली दिखाई दे रही है पेड़-पौ --

जहां पर पान मिलते हैं कुछ भी गुटके उटके टंगे दिखाई दे रहे डब्बे जैसा कु--

दो आदमी खेलते हुए दिखाई दे रहे है दो उधर दो इधर।

यह एक किचन है जिसमें किचन का सामान रखा दिखाई दे रहा--

और हींगल जैसा दिखाई दे रहा है छोटा सा झूला बंधा हुआ है के अंदर--

अ टेबल दिखाई दे रही है मंदिर दिखाई दे रहा है।

खिड़की के अंदर कुछ दिख रहा गुलाबी गुलाबी।

यह एक फिश टैंक मशीन फिश टैंक की वो दिखाई दे रही है शॉप जहाँ पर नइ खुली है माला --